जो नीला तथा लाल ऑरेंज कलर का है।

बहोत सारे कुर्सियां लगी हैं बैठने को--

सामने की ओर एक आदमी बैठा है जिसने पपल कलर की शर्ट पेहन रखी है।

तथा नीचे लाल रंग की चप्पल खुले हैं।

बाहर की ओर ग्रीन कलर के बोड पे पी_डब्ल्यू_डी लिखा हुआ है।

ये तस्वीर एक कॉरिडोर से देखी जा सकती है।

तथा नीचे एक स्विच बोर्ड है खिड़की खुली नजर आ रही है।

तस्वीर में एक बड़ा सा बिल्डिंग दिखाई दे रहा है।

यहां बहुत सारे रैक में फलों को सजा कर रखा हुआ है।

उसके ऊपर एक वास में पीले रंग का फूल रखा हुआ है।

सामने की ओर पीले रंग के बास्केट में भी मछली रखे हुए है।

तथा एक के ऊपर मेंस पार्लर भी लिखा है।

इसके बाहर एक स्कूटी और एक मोटरसाइकिल खड़ी है।

अंदर की और नीचे हरे रंग के कारपेट बिछाए गए हैं।

ये तस्वीर में चकरी के आकार का दिखाई दे रहा है।

एवं कुछ पत्थर नजर आ रहे है छोटे छोटे।

तस्वीर में तीन मैनीक्यूविन दिखाई दे रहे हैं।

एक आदमी खड़ा है एवं उसने पीले रंग की टी शर्ट पहन रखी है।

तथा एक आदमी एक बाइक पर अठंग कर खड़ा है।

केवल एक पेड़ बाउंड्री के अंदर है एक बड़े से स्ट्रीट लाइट --

एवं कुछ और स्टीकर येलो कलर के चिपकाए गए हैं।

एवं कुछ पिलर्स है जो ब्लू कलर के हैं।

सजावट के लिए बहोत सारे बलूंस का इस्तेमाल किया गया है।

राइट साइड में एक वुडेन दरवाजा दिखाई दे रहा है।

एवं उनके इर्द गिर्द सफेद रंग के लकड़े के कुड़सिया लगाई गई हैं।

ये तस्वीर एक डैम के साइड की है।

पीछे की ओर बहोत सारे पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

यहां पे किसी का बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा हैं।